ब्लैक कलर की नजर आ रही है।

यहां पर एक छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई है जिसने पीली --

यहां पर जो बिल्डिंग है। यहाँ बिल्डिंग में पाइट कलर से पेंट किया गया है।

बस वॉशरूम ही दिखाई दे रहा --

सटल में हरे कलर का पेंट किया गया है। यहाँ --